और बिजली के खंबे है कई तारे है।

जिसपर नीला बोर्ड लगा है और उसपे एच -डि -एफ -सी बैंक व्हाइट कलर से लिखा गया है।

साइड मे एक छोटा सा कुछ बना हुआ है और बाहर हेड लाइट लगाई गई है।

और हैप्पी दिवाली भी लिखा हुआ है।

जो की एक लाइन मे लगे हुए है।

जो पीले और काले रंग की है उसपर भी पेड़ पौधे लगाए गए है।

इसकी छत पर गोल गोल गुव्वत लगे हुए है बाहर बहुत लोग खड़े है।

ब्लैक कलर की चेयर है सामने सफेद कलर की बँच है।

अं शायद ये जग रहे है आस पास बहुत से लोग है पीछे बहुत पेड़ है।

काउंटर कांच का है और एक बड़ी से चेयर रखी हुई है।

उसकी तार ब्लैक कलर की है कंप्रेसर व्हाइट कलर का है उसके पीछे एक दीवार भी है।

और एक मूर्ति लगी हुई है उसपर छत्र भी है।

एक होटल का सीन है यहाँ बहुत टेबल चेयर्स है।

कुछ बाते कर रहे है और कुछ खाना परोस रहे है।

एक लड़का जो अपोजिट दिशा मे है उसने चेक की शर्ट पेहनी हुई है।

और बाहर एक बेंच है बेंच पे कुछ लोग बैठे हुए है।

यह एक खाली मैदान का सीन है यहाँ पर घास भी उगी हुई है।

और मेज पर कुछ सामान भी रखा गया है एक सोफ़ा है।

लाल रंग की लकड़ी की बेंच है उसपर तीन लड़के बैठे हुए है।

ओ कुछ देख रहा है और एक महिला भी खड़ी है जिसने मैरून कलर का सूट पहना है।

यह एक शॉप है इसके अंदर बहुत सारी सामने फ्रिज रखा हुआ है।

लाइट के खंबे है खंबों पर तार भी है।

यह एक स्वीट एंड फास्टफ़ूड रेस्टोरेंट है छोटा सा।

यहां पर एक गाड़ी खड़ी है जिसकी बैक लाइट रेड कलर की हैं।

उसकी खिड़कीखुली हुई है और दरवाजे भी खुले हुए है।

जो खड़े है इधर टेबल और चेयर पड़ी है टेबल पर रेड कलर का कपड़ा लगाया गया है।

तीनों के नीचे मॅट लगा हुआ है एक ऑरेंज और एक पिंक एक पर्पल ।

तीनों बैठे हुए योगा कर रहे है।

रंग की शर्ट पेहने हुए है नीचे एक लड़का है जिसने टोपी भी पेहनी हुई है।

दीवार पर बहुत सारे खिलौने टंगे हुए है जिसमे गुड़िया गुड्डे बॉल्स --

जो की स्टील की हैं ऊपर एक खिड़की है एक छोटा सा पंखा लगा हुआ है इधर एक चैनल है जो ब्लैक कलर का है।

यह चश्मे ग्रीन ऑरेंज रेड ब्लैक कलर के हैं।

जिसके शोकेस मे बहुत सारा सामान रखा है चश्मे भी लगे हुए है।

एम- जे माक जॅकब्स लिखा हुआ है।

और दो आदमी बैठे है जिनके सामने लैपटॉप है उनके सामने मेज मे समान रखा गया है।

चल रहा है दो दिल के निशान बने हुए है गुब्बारों से सज्जा की गई है।

नीचे वॉल पेपर लगा हुआ है और फर्श पर--

हॉल मे बहुत सी कुर्सियां रखी गई है एक कुर्सी दीवार के साथ इधर के साइड रखी गई है।